त्यामल भगवान बुद्ध की तस्वीर है और यहां पे कई तीन चार लोग भी बैठे--

ये क्रीमें देखने में काफी सुंदर लग रही हैं।

बिल्डिंग ऊपर टंकी है पानी की।

ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड में सिल्वर में मिल जाएंगे आप यहां पर आ कर अपने--

डिजाइन के अकॉर्डिंग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी ज्वेलरी को कॉस्टेमाइज़ करवा सकते है।

देखिए ये शायद एक शादी का सामरोह चल रहा है यहां पर दूल्हा और दुल्हन इकट्ठे साथ में खड़े हुए हैं।

दूल्हे या दुल्हन की बहन भी खड़ी हुई है दुल्हन हो--

यह एक जिम का व्यू है यहां पर काफी बड़ी-बड़ी मशीने रखी हुई है अगर आप यहां की मेंबरशिप लेते हो तो यहां पर आकर आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो।

और इसके पीछे एक पिंक कलर का बहुत बड़ा किला बिल्डिंग टाइप में बना हुआ है।

और यहां पर बॉयज और गर्ल्स दोनों इकट्ठे बैठकर--